जे एस_बी_आई बैंक है बैंक के बाहर गेट लगा हुआ गेट के अंदर दो बाईस लगी हुई है बाहर एक बाइक एक साइकल लगी हुई है।

मिट्टी के टेप लटके हुए हैं एक बाइक लगी हुई है ग्रीन कलर के पौधे वगैरह भी दिख रहे हैं यहां पे थैलियां वगैरह भी दिख रही हैं यहां पे।

बर्तन दिख रहे महादेव की मूर्ति है माता रानी की मूर्ति घंटी भी और लगी हुई है।

तुम दिख रहा है इसके अंदर टेबल लगे हुए हैं चेयर पड़ी हुई हैं कंप्यूटर पड़ी हैं स्यूचे लगे हुए हैं बुक पड़ी है टेबल पे--

जे एक नाई की देख री है यहां पे नाई एक बंदे की दाढी काट रहा है और रैड कलर की चेयर दिख रही है एल_ई_डी लगी हुई है फैन भी दिख र--

कुछ काफी ज्यादा सामान वगैरा भी दिख रहा है पड़ा हुआ है क्रीम वगैरा।